गार्डन बना हुआ है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है ।

इस दृश्य में पानी दिखाई दे रहा है।

मिट्टी नज़र आ रही है।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।

जमीन पर टाइल्स लगे हुए हैं।

जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

इस दृश्य में वाटर पार्क दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।